वह उनमें से एक भैंस को बांध रखा है। तालाब के बराबर में हरी-हरी घाँसें हैं। पेड़-पौध हैं।

तीन मूर्ति है। मूर्ति का रंग सफेद व सुनहरा है।

लिखा हुआ है दीवार पर और रात का माहौल हैं। कार्य कोई नहीं --

पेड़ पौधे है ऊंची-ऊंची इमारतें हैं।

ये एक कार्यालय के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह लोगो ने --

कुछ लोग रिक्शा में जा रहे हैं कुछ चार पहिया गाड़ी में जा रहे हैं तो कुछ लोग पैदल जा रहे हैं । कुछ लोग --

और एक जंगला भी लगा हुआ हैं। लोहे की समान हैं।